जीनोने मकान का एक बहुत अच्छा फोटो बनाया--

विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया है जिन्हें अध्यापक जांच कर रहे हैं।

गुफा के अंदर पड़ता हुआ लड़का दिखाई दे रहा है जिसनें जूते पहने हुए हैं।